यहाँ पर देख सकते है पूरा ज्यादा चला जा रहा है कमाल के टोटो लगे है अगल बगल एक लाल टोटो हैं।

दो तीन कांच है छोटा -छोटा ये मॉल का फोटो है अभी ये नया नया बन रहा है मॉल और यहाँ पे दुगो सादा-सादा देख सकते है बोक्स --